एक मोटा सा उसने ईयर बड्स टांग रखे है ऐसा सा सा आदमी के हाथ में बोतल है।

पैर रखा है और एक पीछे ट्रेडमिल कर रहा है दोनों ने जूते पैर रखे हैं लोवर है और टीशर्ट पैर रखी है और --

बहुत सारे आदमी खड़े है लेडिस खड़ी है सीडी लगी हुई है।

है एक लड़की है जीने फ़ोन पे बात कर रही है और एक आदमी है जो फ़ोन पे बात कर रहा है पर वह बाइक पे है | बाइक कलर काला है | एक आदमी है जो रिक्शा लेके समान बेच रहा है | यहाँ पे एक गाड़ी है।

साइड सा ब्रिज है। यह जिसके नीचे बीच बीच से खम्भे लगे हुए है मोटे मोटे पत्थर के और यहाँ पे एक आदमी बाहर जा रहा है एक आदमी पकड़ के।

ते सब में शर्ट पहरी हुई है और नीचे चप्पल पहरी और एक जींस पेनी हुई है। साइड में एक और बस खड़ी हुई है और एक रोड है

अरे बड़ी सी चट्टान पे जो कवर हो रखा है उसपे हाथ लगा रहा है और उसके उसके दाढ़ी भी है और उसने उसने हाथ में कुछ पहना हुआ है।